यहाँ पर एक रास्ता दिख रहा हैं। उस रास्ते पर एक कार दिख रही हैं। आगे बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं। वहाँ पर दो तीन खंबे दिख रहे हैं। वहाँ एक दीवार दिख रही हैं। दिवार पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा हैं।

वहाँ पर एक गेट दिख रहा हैं। उपर आसमान दिख रहा हैं।

यहाँ पर एक रूम दिखाई दे रहा हे जहाँ पर तीन लोग बैठे हुए नजर आ रहे है वहाँ तीन कुर्सियाँ लगि हुई है और साइड मे कुछ कॉर्नर बनाए गए हे।

यहाँ पर एक मंदिर दिख रही हैं। उसके ऊपर मीनार बनाई हुई हैं। वहाँ पर एक चाँद का कुछ दिख रहा हैं। वहाँ पर कुछ खिड़किया दिख रही हैं।

वहाँ कुछ तारे लटकती हुई नजर आ रही हैं। आगे दो पंखे दिख रहे हैं। नीचे एक शटर दिख रहा हैं। और अंदर कुछ डब्बे दिख रहे हैं।

यहाँ पर एक मकान दिखाई दे रहा है। जहाँ पर कुछ बच्चे खेलते हुऐ नजर आ रहे है। ऊपर की तरफ बहुत सारी खिड़कियाँ दिखाई दे रही है। ऊपर आसमान दिख रहा है। वहा पर मकान के ऊपर कुछ तारे लटकते हुऐ नजर आ रही है।

वहाँ जो टेबल रखी हुई अंदर की तरफ एक गमछा डाला हुआ है। वहाँ बहुत सारे पिलर दिख रहै है अंदर ये दो खिड़कियाँ दिख रही है। वहाँ पर कुछ मूर्तिया दिख--